और एक चेयर ब्लू कलर चेयर पे एक अंकल बैठे हुए अंदर दो लोग काम कर रहे हैं।

एक ग्रीन और व्हाइट कलर का अ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर के बहुत सारे हैं।

और बीच में एक खंभा भी है बहुत बड़ा अह स्टैंड है।

और देवी हाथ में त्रिशूल लेके खड़ी है।

और उस ट्री के नीचे वाइट और ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ है और अ --

डिवाइडर के लिए स्टील का कुछ बनाया है।

और एक बास्केट भी है बहुत सारी ग्लास रखा हुआ स्टील का।

एक और डस्टबिन भी है उसके साइड में बहुत सारे प्लांट किया हुआ है ट्रीज ।

और साइड में एक टेबल और चेयर लगाया है और कुछ लिखा हुआ गोल्डर--

ये एक कार का दिखाई दे रहा है गैरेज --

और एक अंकल जो है एक टायर निकल कर काम कर रहे हैं।

और ये अ हर तरफ जो है ग्रीनरी दिखाई दे रहा--

ये एक गार्डन है जहां पे बहुत सारे खेलने के लिए लगाया हुआ है सुविंग है सीसौ है और उस तरफ जो है --

ग्रीन और ब्लैक कलर में जिम के इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए एक अंकल साइक्लिंग कर रहे हैं।

ये एक गार्डन जैसे दिखाई दे रहा है।

और एकदम पीछे है जो बड़े बड़े पेड़ हैं।

और थोड़ा सा एकदम लास्ट में पेड़ पेड़ दिखाई दे रहा है साइड में।

वहां पे बनारसी करके कुछ लिखा हुआ है रेड कलर में--

अ गुजराती में लिखा हुआ है और ये रोड साइड कुछ शॉप्स लग है सामने --

और एक अंदर की तरफ एक र स्कूटी पार किया हुआ है बोहोत लोग बैठ के कुछ खा रै है।

ये एक होटेल है जहां पे बहुत सारे बच्चे लोग बैठे हुए है।

और दो लोग नाच रहे एक आंटी और एक बेटी और वो बड्डे सेलिब्रेट कर रहे --

ये एक सैलून दिखाई दे रहा है एक बच्चे का कटिंग हो चुका है तो उसका बनाया हुआ है।

और वो लड़का हंस रहा है और दूसरी तरफ एक अंकल कर रहे है और--

यहां पे एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बारिश गिरा हुआ है तो गीला है।

और जो वो है वो पानी के अंदर है और--

ये ऐसा ही उसके साइड में छोटे छोटे अ --

बहोत सारे पत्थर लगाया हुआ है रेक्टेंगल में और वह क्लाउड जैसे लग रहा है।

आधा और एक टी_वी है। एक अंकल खड़े हुए है।

दो लोग काउंटर पे है एक आंटी खा रही है अ टेबल --

महराजा सोफ़ा जैसे और दो तकिया भी है रेड कलर के आजू बाजू।

जहां पे बहोत सारे बोट जो हैं रुके हुए हैं।

तो एक अंकल जा रहे और एक अंकल आ एक आंटी आ रही है।

और हर तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है एकदम उस तरफ--

और साइड में एक कलर का कुछ तो है और चार स्टेप्स है स्टेयरर्स है।

और जो डी अह आगे का गेट है वो कांच का है।

और एक लड़की स्कूटी देख रही है और साइड में एक टेलीफोन लगाया हुआ है एक टे--